इस फोटो में चार बल्ब जलते हुए दिख रहे हैं।

ये सब अपने फोन में कुछ काम कर रहे हैं।

पिक्चर में मिट्टी से बने हुए दीवार भी दिखा रहे है।

इस चित्र में मुझे बिल्डिंगस दिख रहे हैं।

इस फोटो में मुझे सीढ़ी दिख रहा है।

इस फोटो में पूजा चल रहा है।

दरवाजे का कलर नीला कलर का है।

इस फोटो में मुझे पहाड़ दिख रहे हैं।

यहां मुझे तीन सफेद गाड़ी भी दिख रहा है।

इस आदमी का टी शर्ट का कलर नीला रंग का है।

इस पिक्चर में मुझे बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं।

पिक्चर में टींन से बने हुए छत दिख रहे हैं।

इस फोटो में बहुत सारे सोफा और चेयर टेबल रखे हुए हैं।

इस पिक्चर में एक आदमी पूजा करते हुए दिख रहा है।

इस फोटो में मुझे एक ऊंट दिख रहा है।

मुझे इस पिक्चर में एक सफेद रंग का गाड़ी दिख रहा है।

इन सब कारो को रिपेयर किया जा रहा है।

इनमें तीन हरे रंग के छोटे छोटे टायर लगाए गए हैं।

इस दुकान का दीवार का कलर सफेद रंग का है।

इस पिक्चर में मुझे एक लंबा सा पाइप दिख रहा है।

फोटो में आसमान का कलर सफेद है।

इस चित्र में बच्चे अपने अपने प्रोजेक्ट बना रहे हैं।

इस घर में एक गाड़ी और एक बाइक पार्क हुए हैं।

इस पिक्चर में मुझे बहुत सारे औरत दिख रहे हैं।

इस पिक्चर में मुझे एक ब्रिज दिख रहा है।